और जा के एक दो तीन चार पांच कलर का साड़ी है ढेरी सारी साड़ी रखा हुआ है। उसमें से एक बड़ा-सा साइड में एक वाईट कलर का बोरा टाइप - सा रखा हुआ है। और जा के एक आदमी दिखा रहा है उसको अच्छा से ।

खुला है और पानी रहा है और पानी के बगल में वाइट - वाइट कुछ चमक जैसा रहा है देखिए--

और भारत माता का भारत माता के गाने पे सोंग कर रहा है और जहाँ की झंडा दिखाई दे रहा है भारत का।

घर है उसके बगल में गाछी है और जाके बड़ा सा घर तैयार हो रहा है पत्ता सब है ईंट है स्कूटी है बगल में --

एक फुटबॉल का मैच हो रहा है जिसमें से दो चार छह आदमी दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी साइड में बैठा हुआ है। एक फुटबॉल है जिसमें से एक व्हाइट पैंट - शर्ट पहने हुए आदमी खेल रहा है।

ये देखिये किसी का साधी जेसा झूलुस टाईप से है जिसमे से आग जल रहा है बहुत सारे आदमी का भीड़ इसे देख रहे है।

व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए आगे में ब्लैक शर्ट व्हाइट पैंट पहने हुए अंदर में कुछ फोटो जैसा ऊपर में पोस्टर में लगा --

बैट लेकर खेल रहे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके पीछे ब्लू कलर का तिरपाल जैसा कुछ है। थोड़ा सा आगे उसमें एक व्हाइट कलर लम्बा लाइन है।